स्टेज पर कई सारे रंगीन कागजों के टुकड़े पड़े हुए हैं।

सामने की ओर एक सख्श जिसने हॉफ टी शर्ट तथा हॉफ पेंट पहन रखी है।

किसी ग्रॉसरी स्टोर का है।

एवं ऊपर की ओर कुछ टिशू पेपर तथा शीशे की गिलास रखी हुई दिखाई दे रही है।

तस्वीर में किसी शादी व्याह का कार कार्यक्रम सेलिब्रेट किया जा रहा है।

यहां पर एक शख्स चलता हुआ नजर आ रहा है जिसने नीली कलर की शर्ट तथा काली पैंट पहन रखी।

तस्वीर पर हमें जमीन पर बिखरी हुई कई सारी मिर्ची दिखाई दे रही है।

जिसके दोनो तरफ कुर्सियां रखी हुई है।

उपर में स्कूल के बस्ते तथा कई सारे हेलमेट भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

हमने की और एक फास्ट फूड की दुकान दिखाई दे रही है।

नीचे वाले पर बहुत ही बड़ी सी दरी बिछी हुई दिखाई दे रही है।

तस्वीर में सामने की ओर एक बहुत ही बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर रेक्स में कई सारी अन्य जरूरत की चीजे हैं।

जमीन पर हरे हरे घास उगे हुवे दिख रहे हैं।

यहां चारों तरफ हरे भरे पेड़ उगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसे सफेद रंग से रंग गया है तथा इसके पिलरों पर नारंगी रंग किया गया है।

सीलिंग पर लगे पंखे तथा सफेद कलर की लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

हरे हरे घास एवं पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

जिसके ऊपर सफेद कलर की सात प्लेटे रखी हुई दिखाई दे रही है।

इनमें से दो में चावल से बने कुछ पकवान रखे हुए हैं।